तीनों ने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी हैं।

और यहां पे केक रखा हुआ है यहां पे सब्जी वगैरह रखी हुई है लीड रखी हुई है ये यहां मेज रखी हुई है मेज पे ये केक रखा हुआ है।

यहां पे ये आदमी खड़ा हुआ हैं। इस आदमी ने सफेद रंग के--

देख सकते हो यहां पे पार्क सा है ये यहां पे --

यहां पे आप देख सकते है बहुत सारी--

यहां पे लाल और सफेद रंग के फूल लगे हुए हैं और यहां पे--

देखने में पीछे पर सफेद पीले रंग का पर्दा भी दिख रहा।

ये यहां पर मिठाई की दुकान है। यहां पर लड्डू रखे हुए है जलेबी रखी हुई है।

यहां पे आप देख सकते हो ये गाड़ी खड़ी हुई है और इस गाड़ी का रंग लाल काला है और यहां पे--

कराटे सीख रही हैं और यहां पे बहुत सारे आदमी और बच्चे खड़े हुए हैं ये यहां पे --

ये यहां पे जो औरत इसने काणे रंग कपड़े पहन रखे हैं और सफेद रंग के जूते पेहन रखे हैं और ऊपर आप देख सकते हो लाइट का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है।

और यहां पे पेड़ भी लगे हुए हैं ऑटो भी खड़ी हुई है यहां पे।

लाइट का भी दिख रही एक लाइट के खंभे--

और यहां पे जो ये लोग की टीन है इसमें लाल रंग का पट्टी से कर रखी है और ऊपर पानी की --

ये यहां पे देख सकते हो ये पंखा लगा हुआ है और यहां पे ये बेंच हैं डेस्क रखी हुई है बच्चों के और यहां पे ए_सी लगी हुई है।

ये बच्चे खेल रहे हैं यहा पे और यहा पीछे झाड़ लगी है नेट लगा हुआ है यहा पे आप देख सकते है ये नेट दिख रहा है और यहा पे गाड़ी खड़ी हुई है।

और यहां पे बाबा जी डी_जे बेरला लिखा हुआ है।

ये क्लास लिखी हुई है और यहां पे कॉमर्स लिखा हुआ है और यहां पे फोटो लगे हुए हैं ये--

पांच आदमी बैठे हुए हैं और दो आदमी खड़े हुए हैं और एक आदमी और--

यहां पे आप देख सकते हो यह स्विमिंग पूल है और यहां पे--